दुकान के बाहर एक टेबल हैं जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ हैं और उसने एक हेल्मेट रखा हुआ हैं एक बाइक खड़ी हुई हैं और शटर वाली दो--

नीचे ईंट पड़ी हुई है लेंटर पड़ चूका है।

कुछ लोग अ ड्रेस पहने हुए हैं और पादरी की पढाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं

एक टेबल है पीछे दीवार में लिखा है बड़े अक्षरों में बेस्ट काफी --